रैक सीढ़ी लगी हुई है जो की रेलवे के ऊपर चढ़ने के लिए बनी हुई है और एक सामने--

सामने एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है जो कि डबल स्टोरी का है ऊपर पंडित जी टी स्टाल लिखा हुआ है ऊपर एक गाय का बैनर लगा हुआ है।

ईंटें बनाया जा रहा है यहां पास किनारे ईंटें जमें हुए हैं एक सड़क डली हुई है।

नीचे चिप बिछी हुई हैं रोड में एक दरवाजा दिखाई दे रहा है उसके आगे एक गाड़ी खड़ी हुई है एक व्यक्ति पट्टी में बैठा हुआ है एक व्यक्ति पैदल जा रहा है एक और आगे गाड़ी खड़ी हुई है।

ये व्यक्ति थैला ले के चल रहा है ट्रेन में एक व्यक्ति थैला ले के खड़ा हुआ है।

तेहूरा रोड लिखा हुआ है। एक है लाइट दिखाई दे रही हैं।

झरना के ऊपर तरफ को बादल दिखाई दे रहे हैं उसके बाजू में लेफ्ट और राइट तरफ को पेड़ दिखाई दे रहे हैं पत्थल दिखाई दे रहे हैं चट्टान दिखाई दे रही है।

सामने बस स्टैंड दिखाई दे रहा हैं यहाँ सामने दो बसें रख खड़ी हुई हैं।

और उसके बाद ट्रक को टायर जमे हुए है ऊपर सिया टायर लिखा हुआ है नीचे ग्रिप एक्स थ्री लिखा हुआ है।

सामने एक शॉप दिखाई दे रही है शॉप में कांच के खंड बने हुए हैं जिसमें स्लाइडर ब भी लगे हुए हैं कांच के।

सामने मसाला लीया हुआ कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है उसके आजू बाजू पीले कलर के कपड़े पहने ये लोग वहां खड़े हुए है।